कुछ लोग बाइक पर बैठे हैं कुछ लोग ऑटो पर जैसे की मैं देख पा रही हूँ --

बहुत सारे छोटे छोटे दुकान लगे हुए हैं जिसमे से चाय बेची जा रहे हैं --

जैसे कि मैं देख पा रही ह--

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यह एक सुबह का समय हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ --

जैसे की मैं देख पा रही हूं यह एक शाम का समय है जैसे कि मैं देख--

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बजार लगी हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ --

सामने में एक घर है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ घर के दरवाजे का रंग नीला रंग का है जैसे कि मैं देख पा --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यह एक गोल्ड शॉप हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ --

कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारे नारियल--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

दुकानदार खड़ा है दुकानदार ने कथा रंग का शर्ट और काला रंग का पेंट पहना है जैसे कि मैं देख पा रही हूं।

यहां पर कुछ लोग खाना खा रहे हैं।